और इसमें कुर्सियां है और चोंकी भी है। एक पानी का बोतल --

मशीन में ऊपर एक गोल गुबंद है और इसके चारों तरफ लंबी-लंबी मीनारे नजर आ रही हैं।

इस में हरी-हरी घास और सूखी घास भी नजर आ रही है।